किये गए है और ऊपर एक भारत का तिरंगा लगाया गया है निचे भी कोई शहीद का मूर्ति बनाया गया है।

और मस्जिद के ऊपर एक चूल्हा जैसा है और मंदिर का जो बाहर का जो गेट है वो ऑफ़ वाइट कलर का है और बोहोत सारे जगा में रंग उट गया है।

और यहाँ पर बुफे कितने में मिलता है। वो यहाँ पर एक साईड बोर्ड में लिखा गया है। ऊपर उठने के लिए एक सीरिया दिख रहा है।

लड़के ने एक टी-शर्ट के ऊपर एक शर्ट पहने हुए है और ये सैलून में --

ये एक बुक स्टोर है। यहाँ पर बहुत सारे बुक मिलते हैं और पेन का कलेक्सन भी है। बुक स्टोर में भी गुब्बारे लगाया गया है।

अ ये एक अ लड़का यहाँ पर अपने मसल्स को फुला कर खड़े हुए है।

और ऊपर अ जो दीवार है वहा पर वर्क जैसा कुछ लिखा हुआ है।

यहाँ पर एक इंजीनियर अपने जो जमीन है वोह --

एटीएम के दरवाज़े के बाहर बहोत सारा जो स्लिप होता है ट्रांजैक्शन स्लिप वो पड़े हुए है। एटीएम के अंदर तीन आदमी हैं।

एक आदमी का साया भी दिख रहा हैं।